एक जेंट्स है जो अभी जा रहा है ऑफ --

ऑर्डर है ग्रीन पे नीचे मार्बल का--

ये जो ग्राम पे पानी दे रहे हैं।

घर है रोड है बाउंड्री टाइप्स का किया--

एक कार दिख रहा है जिसे बहुत सुंदर से डेकोरेट किया गया है गुलाब के फूलों से।

है बगल में टेन परसेंट ऑफ --

ट्रक है जिस पर बहोत सारे आदमी काम कर रहे हैं एक आदमी जा रहा हैं।

ब्राउन ब्राउन टाइप का कलर किया गया है।

और भी बहोत इलौक्ट्रॉनिक समान ऊपर डिस टी_वी का छतरी लखा गया है ऊपर और भी--

लैपटॉप के मशीन के कुलर के और भी--

और भी हम्म रास्ता है कच्चा रास्ता टाइप का थोड़े गद्द्दा भी है।

हर फॉल सीलिंग्स का काम है व्हाइट व्हाइट लाइटें जल रही है फैन है।